और गेलेरी में मोटरसाइकल खड़ी हुई है एक व्यक्ति दिख रहा है।

जिन पे कोई भी पलस्तर नहीं है।

आम का भी पेड़ है और अन्य प्रकार के पेड़ लगे हुए है वैसे जो मिट्टी है लाल कलर की है अच्छी है।

व्हाइट कलर के फूल लाल कलर के फूल और मालाएँ पीले कलर की हैं और डलिया नजर आ रही हैं।

ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी है।

सामने कई सारे एरो के निशान दिख रहे है।